कुछ हरे पौधे है और अंदरकी तरफ रास्ता है अंदरकी तरफ उजाला है और--

प्लेट में सॉस है जिसका रंग हल्का हरा है नास्ते में दही है दही का रंग सफ़ेद है और हरी धनिया है।

दिखाई दे रहा है बाउंड्री का रंग सफेद है।

एक भगवान जी की फोटो है।

यह संगीत का कुछ सामान रखा है तीन गिटार है एक लाल एक यह पिला।